ये सामने में एक ओरेंज कलर का टेंट है और टेंट के अंदर से ये तस्वीर खीचा जा रहा है| सामने में बहुत बड़ा मैदान है|

और सामने में एक चर्च है जिसमे जिसका का कलर ऑरेंज कलर का है।

ग्रे कलर का गंजी और जीन्स ब्लैक कलर का और टोपी पेहेन कर खड़ा है और ऊपर में लाइट है।

और ठीक पहाड़ के अंदर एक गुफा है जो बिलकुल चौकोर कटा हुआ है और अंदर से बिलकुल अँधेरा गुफा है।